इ पिक्चर में एक बड़ा सा बंगला है।

और दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

एक कलर का बहुत सारा है।

यहाँ मे टीना से बना के एक घर है।

छोटा सा एक घर है घर के ऊपर में ब्लैक कलर का ड्रम है।

एक घर में बहुत सारा इंसान लोग है।

पीछे में बहुत बड़ा पेड़ लगा के है।

और फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है और दीवार में बहुत सारा फ्रेम भी लगा के है।

ये पिक्चर में एक बड़ा सा रूम है उधर में एक टेबल भी है।

ये पिक्चर में रस्ता में बड़ा सा एक गेट बना के है।

ये पिक्चर में एक बड़ा सा रूम है।

बहुत सारा इंसान लोग कारपेट में बैठ के हैं।

ये पिक्चर में बहुत सारा मिठाई सब है।

तबला भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा पुतला भी है।

बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

प्लास्टिक का एक चेयर है और ब्लैक कलर का एक टेबल भी है।

एक कलर का वायर भी दिखाई दे रहा है और साइड पे एक ट्रक भी है।

दीवार पे फैन टंगा के रखा है।

एक इंसान कर के हैं।